और एक क्लासरूम है और क्लासरूम में अ एक टीचर है कुछ स्टूडेंट्स है।

यहाँ पर कुछ शर्ट्स वगैरह लगी है टी-शर्ट्स है और कुछ पैंट है शॉर्टस है और लगे हुए है।

यहाँ पर एक बड़ी ट्रेवल बस खड़ी हुई है जो कि वाईट कलर की है और साईड में एक बस के साईड में एक स्कूटी खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक क्लिनिक है और एक बिल्डिंग्स बनी है। जिसमे बहुत सारे बोर्डस् वगैरह लगे है। होल्डिंग्स लगे है। यहाँ पर एक क्लिनिक लिखी बनी हुई है। बिल्डिंग में --